ऊपर की ओर भी बहुत सारे व्यक्ति हैं और उसमें छोटे छोटे पेड़ भी हैं और पौधे भी दिख रहे हैं।

ये मंदिर है जो वो मार्बल से बने हुए हैं और इसके बगल में एक टेंट भी बना हुआ है जो की बांस का और प्लास्टिक से बना हुआ है।

बगल में एक बिल्डिंग भी है और इसके बगल मे बहुत सारे डेकोरेशन भी किया गया है यहां पे बहुत सारी लाइटें लगाई गई है।

यहां एक फील्ड है जिसमे बहोत सारे बच्चे और बहोत सारे व्यक्ति भी हैं।

इस दुकान के अंदर दो व्यक्ति भी हैं और बहुत सारे इसमें लाइटें लगी हुई हैं।

ये बत्तख है जो वाइट कलर के दिख रहे हैं इसमें एक ब्राउन कलर के भी बत्तख दिख रहे--

ये एक शॉप है जिसमें काउंटर में लाइट लगा हुआ है इसमें छे पानी के बोतले दिख रहे है एक पौधे का गमला भी दिख रहा है।

ये एक स्टेज है जिसपे एक लड़की खड़ी हुई है इसके पीछे एक इसके स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें ब्लू और पिंक कलर के कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं और यहां पे छोटे छोटे रिबन कट किया हुआ बहुत सारे स्टेज पे रखे हुए हैं।

यहां एक बिल्डिंग दिख रहा है जिसके सामने बहोत सारे व्यक्ति खड़े हैं और पुलिस भी है।

दो व्यक्ति बाहर की ओर आ उंगली कर दिखा रहे हैं और इसपे एक व्यक्ति का जूता भी दिख रहा है और यहां पे बहोत छोटे छोटे कंकड़ भी है।

तालाब को गोल घेरे से बनाया गया है इसके अगल बगल भी बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे लाइटें भी लगी हुई है यहां पे बहोत सारे व्यक्ति भी है।

इसके सामने बहुत सारे तारे दिख रही है।

यह एक माल है जिसमें एम बाजार लिखा हुआ है।

इस तालाब में बोटिंग भी हो रहा है इसमें पानी भी पूरा भरा हुआ है ये तालाब बहुत ही बड़ा दिख रहा है।